और जब छोटी-छोटी घास होती तो आराम से बैठ भी सकते है।

यह एक दृश्य है जो देखने में बोहोत ही प्यारा लग रहा है इसमें सामने मंदिर की तरह इसमें आकृत बनी हुई है आस-पास पानी है।

इसमे जीने बने हुए हैं ऊपर से नीचे जाने के लिए और वापस आने के लिए अलग अलग।